देख यार एक मुझे एसा बेडरूम चाहिए अपने लिए देख भी छोटा सा है ज्यादा बड़ा बेड नहीं है देख यार बेडशीट भी कितनी प्यारी है और ये बेड के ऊपर जो मूर्ती लगी हुई है दो तस्वीरे पेंटिंग मुझे ईएसआई पेंटिंग भी चाहिए अपने लिए ये अच्छी लगती है।

यार मुझे ना अपने भैया की शादी आ रही है मुझे ना कोट सीलवाना है तो मुझे कपड़ा लेकर आना है। मैनें सुना है पास में एक शोरुम खुला है कपड़ो का तो वहाँ चलना है कपड़ा लेने अपने भाई की शादी के लिए कोट पैंट के लिए कपड़ा ले कर आऊंगा बिल्कुल गजब बिल्कुल हट के यार सब से अलग --

यार ये वाला देख रहा है जब हम मतलब नाव में बैठते हैं जब उसमें गंगा में बैठते हैं तो बगले आते हैं वो इतने प्यारे लगते हैं बगले बहुत सारे मतलब वही मछली उठाते हैं अपने पंजों से और भाई नाव पर बैठ के मजा लेते है पूरे देखना तू चलना।

यार मैंने ना अपने घर में एक मंदिर बनवाया छोटा सा मंदिर बनवाया तो उसपे मतलब मुझे एक तो नारंगी कलर चाहिए था उससे कलर करने के लिए हरा कलर चाहिए था मूर्ति भी विस्थापन कर ली है यार आज कल बुलाया था देख कल तक का --

ये वाली जो गंगा जा रही है ना ये वाली नहर जा रही है तो बहुत ही बडी है पानी देख रहे हैं कितना लगभग बीस चालीस फीट गहराई है इसकी भाई नाना डूब जाएगा अरे तैराकू नहाते है इसमें ।

यार देख यार ये बन्दे भी क्रिकेट खेल रहे है और ये बैठ कर देख रहे है। आपन भी खेलते है ना इनसे बात करते है अरे अभी थोड़ी बहुत देर में इनका मैच पूरा हो जाएगा इतने बन्दा है ये देख एक दो बेठे है शायद ये आउट हो गये। अपुन भी खेलेंगे यार मेरा बहुत दिल कर रहा भाई मैच खेलने का।

यार ये वाला मंदिर तो मां काली का लग रहा है देख --